सामने एक लैपट दिख रहा है लैपट के चार पांव भी दिख रहा है लैपट को व्हाइट कलर की दीवाल से घेर के रखा है व्हाइट कलर की दीवाल के ऊपर नेट भी लगा हुआ है नेट का कलर है ब्लैक ।

उसके नीचे ढेर सारा हिरण दिख रहा है डीयर जिसको बोलते हैं।

और चार आदमी दिख रहा है। एक ने एब ब्लू कलर के जैकेट और व्हाइट कलर के पैंट पहने हैं। एक ने ब्लू कलर की जैकेट पहना हुआ है सबने जैकेट और स्वेटर पहना पहन के रखा है।

एक चर्च दिख रहा है चर्च पर वॉल पर क्रॉस लगा हुआ है बहुत सारे लोग मोमबत्तियां जला रहा है।

सामने एक मार्केट दिख रहा हैं मार्केट पे दो बांस खड़ा हुआ हैं दो बाइक भी खड़ा हुआ हैं।

एक बड़ा सा आईने के सामने पांच लड़कियाँ योगा मेट के ऊपर बैठा है। सब की योगा मेट की कलर अलग है। पांच लड़कियों की पोजीशन सेम है।